इस ए_सी लगा हुआ एक दिख रहा है टाटा स्काई का एक बोर्ड दिख रहा है सोलार का एक प्लेट दिख रहा है झंडे लगे हुए दिख रहे हैं बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है सा--

सुंदर सा एक गुरुद्वारा नजर आ रहा है सामने जिसमें निशान दिख रहा हैं।

उसके बाद एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है जहां पर लोग चार्ज कर सकते हैं।

और एक एक्टिवा है एक जुपिटर है।

अरे देखिए कितना अच्छा नजारा है एक आदमी एक टीचर अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।

हम वहां पे रेगुलर जाते हैं खाने के लिए ये रायपुर में अह उपलब्ध है।

मेरे ख्याल से साठ किलो मीटर लीटर प्रति लीटर ये चलती है गाड़ी--

हम आप देख सकते हैं कि हमारे घर से कितनी अच्छी ब्यू रहती है हम अपने घर से बैठ के नजारा देखते हैं।

इसे क्या होगा कि आप और अपनी बॉडी दोनों फिट रहेगी और आपका परिवार भी फिट रहेगा।